मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात यानि आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर और अपने परिवारजनों के साथ जब मिलते हैं तो वो कितना सुखद होता है कितना संतोषदायी होता है
मन की बात के द्वारा आपसे मिलकर मैं यही अनुभुति करता हूँ और आज तो हमारी साझा यात्रा का ये 108वाँ एपिसोड है
हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है
माला में 108 मनके 108 बार जप 108 दिव्य क्षेत्र मंदिरों में 108 सीढ़ियाँ 108 घंटियाँ 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है
इसलिए मन की बात का 108वाँ एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है
इन 108 एपिसोड्स में हमने जनभागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं उनसे प्रेरणा पाई है
अब इस पड़ाव पर पहुँचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेजगति से बढ़ने का संकल्प लेना है
और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे
आप सभी को 2024 की बहुतबहुत शुभकामनाएं
साथियो मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं
ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियाँ हासिल की हैं
इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी
बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की
अनेक लोगों ने मुझे G20 सम्मित की सफलता याद दिलाई
साथियो आज भारत का कोनाकोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है विकसित भारत की भावना से आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है
2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है
दिवाली पर रेकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फोर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है
साथियो आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान3 की सफलता को लेकर सन्देश भेजते रहे हैं
मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे
साथियो जब नाटूनाटू को ओस्कार मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा
थे एलिफेंट व्हिस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ
इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा
इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया
एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पारा गेम्स में 111 मेडल जीते
क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया
Under19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है
कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया
अब 2024 में पारिस ओलम्पिक का आयोजन होगा जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है
साथियो जब भी हमने मिलकर प्रयास किया हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ
हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया
इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं
70 हज़ार अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है
साथियो मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता उसका विकास रुक जाता है
भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं
2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे आज हमारी रैंक 40 है
इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट्स की संख्या ज्यादा रही है जिसमें करीब 60 डोमेस्टिक फंड्स के थे
क्यूएस एएसआईए यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है
अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी
ये तो सिर्फ झलक है भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है हमें देश की इन सफलताओं से देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है गर्व करना है नए संकल्प लेने हैं
मैं एक बार फिर आप सबको 2024 की शुभकामनाएं देता हूँ
मेरे परिवारजनों हमने अभी भारत को लेकर हर तरफ जो आशा और उत्साह है उसकी चर्चा की ये आशा और उम्मीद बहुत अच्छी है
जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा
लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे
आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में कितनी बातें होती हैं यह हम सभी के लिए खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है
इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था
आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है
नामो App पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है
साथियो भारत के प्रयास से 2023 को इंटरनेशनल यियर ओएफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया
इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बहुत सारे अवसर मिले हैं इनमें लखनऊ से शुरू हुए कीरोज फूड्स प्रयागराज के ग्रैंडमा मिलेट्स और न्यूट्रास्यूटिकल रिच आर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्टअप शामिल हैं
अल्पिनो हेल्थ फूड्स आर्बोरियल और कीरोस फूड से जुड़े युवा हेल्थी फूड के आप्शंस को लेकर नएनए इनोवेशन भी कर रहे हैं
बेंगलुरु के अनबॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाओं ने ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदीदा डाइट चुनने में मदद कर रहे हैं
फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है उससे इस क्षेत्र से जुड़े कोचेस और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है
जोगो टेक्नोलॉजीज जैसे स्टार्टअप्स इस मांग को पूरा करने में मदद कर रहे हैं
साथियो आज फिजिकल हेल्थ और वेलबीइंग की चर्चा तो खूब होती है लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का
मुझे यह जानकार बहुत ख़ुशी हुई है कि मुंबई के इन्फ़ीहील और यूरदोस्त जैसे स्टार्टअप्स मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं
इतना ही नहीं आज इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है
साथियो मैं यहाँ कुछ ही स्टार्टअप्स का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लम्बी है
मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरुर लिखते रहें
मैं आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जानेमाने लोगों के अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ
ये पहला मेसेज सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का है
ये फिटनेस विशेष रूप से फिटनेस ओएफ थे माइंड यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपने विचार साझा करेंगे
ऑडियो
इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है
मेंटल इलनेस एंड होव वे कीप और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एआरई वेरी डायरेक्टली रिलेटेड होव अलर्ट स्टैटिक फ्री एंड डिस्टर्बेंस फ्री वे कीप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम विल डिसाइड होव प्लीजेंट वे फील विथिन औरसेल्व्स व्हाट वे कॉल एएस पीस लोव जॉय ब्लिसफुलनेस एगोनी डिप्रेशन एक्सटेसीज अल्ल हेव आ केमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल बेसिस
फार्माकोलॉजी इस एसेंशियली ट्राइंग टो फिक्स थे केमिकल इम्बेलेंस विथिन थे बॉडी बाय एडिंग केमिकल्स फ्रॉम आउटसाइड
मेंटल इलनेस एआरई बेइंग मैनेज्ड थिस वे बट वे मस्ट रियलाइज थाट टेकिंग केमिकल्स फ्रॉम आउटसाइड इन थे फॉर्म ओएफ मेडिकेशंस इस नेसेसरी व्हेन ओने इस इन एक्सट्रीम सिचुएशन
वर्किंग फोर एएन इंटरनल मेंटल हेल्थ सिचुएशन ओर वर्किंग फोर एएन इक्वानिमस केमिस्ट्री विथिन औरसेल्व्स आ केमिस्ट्री ओएफ पीसफुलनेस जॉयफुलनेस ब्लिसफुलनेस इस सोमथिंग थाट हस टो बीई ब्राउट इंटो एवरी individualएस लाइफ इंटो थे कल्चरल लाइफ ओएफ आ सोसाइटी एंड थे नेशंस अराउंड थे वर्ल्ड एंड थे एंटायर ह्यूमैनिटी
इतएस वेरी इम्पोर्टेंट वे अंडरस्टैंड और मेंटल हेल्थ और सैनिटी इस आ फ्रेजाइल प्रिविलेज वे मस्ट प्रोटेक्ट इत वे मस्ट नर्चर इत
फोर थिस थेरे एआरई मैनी लेवल्स ओएफ प्रैक्टिस इन थे योगिक सिस्टम कंप्लीटली इंटरनलाइज प्रोसेस थाट पियोपल कैन डीओ एएस सिम्पल प्रैक्टिस विथ व्हिच थे कैन ब्रिंग सर्टेन इक्वानिमिटी टो थीर केमिस्ट्री एंड सर्टेन काल्मनेस टो थीर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम थे टेक्नोलॉजीज ओएफ इनर वेलबीइंग एआरई व्हाट वे कॉल एएस थे योगिक साइंसेज
letएस मेक इत हैपेन
सामान्य तौर पर सद्गुरु जी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं
आइए अब हम जानीमानी क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर जी को सुनते हैं
मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूं
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है
आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है ओने कैनोट आउटट्रेन आ बड़ डाइट इसका अर्थ ये है कि आप कब खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा
हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए एन्कोरेज किया है
जो की इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है
रेग्यूलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है
इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की जरुरत होगी
जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे
मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद
हरमनप्रीत जी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी की बातें निश्चित रूप से आप सभी को प्रेरित करेंगी
आइए ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद जी को सुनें
हम सभी जानते हैं कि उनके खेल शतरंज के लिए मेंटल फिटनेस का कितना महत्व है
ऑडियो
नमस्ते आई एएम विश्वनाथन आनंद यू हेव सीन मे प्ले चेस एंड वेरी आफ्टेन आई एएम आस्क्ड व्हाट इस यूर फिटनेस राउटाइन नोव चेस रिक्वायर्स आ लोट ओएफ फोकस एंड पेशेंस सो आई डीओ थे फॉलोइंग व्हिच कीप्स मे फिट एंड अगिले
आई डीओ योगा त्वो टाइम्स आ वीक आई डीओ कार्डियो त्वो टाइम्स आ वीक एंड त्वो टाइम्स आ वीक आई फोकस ओन फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग वेट ट्रेनिंग एंड आई टेंड टो टेक ओने डे ओएफएफ पेर वीक अल्ल ओएफ ठेसे एआरई वेरी इम्पोर्टेंट फोर चेस यू नीड टो हेव थे स्टैमिना टो लास्ट 6 ओर 7 हाउर्स ओएफ इंटेंस मेंटल इफोर्ट बट यू अलसो नीड टो बीई फ्लेक्सिबल टो एबल टो सिट कम्फर्टेबली एंड थे एबिलिटी टो रेगुलेट यूर ब्रीथ टो काल्म डाउन इस हेल्पफुल व्हेन यू वांट टो फोकस ओन सोमे प्रोब्लेम व्हिच इस यूजुअली आ चेस गेम
माय फिटनेस टिप टो अल्ल मन्न की बात लिस्टेनर्स वाउल्ड बीई टो कीप काल्म एंड फोकस ओन थे टास्क अहेड
थे बेस्ट फिटनेस टिप फोर मे एब्सोल्यूटली थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिटनेस टिप इस टो गेट आ गुड नाइट स्लीप
डीओ नोट स्टार्ट स्लीपिंग फोर फोर एंड फाइव हाउर्स आ नाइट आई थिंक सेवेन ओर आइट इस आ एब्सोल्यूट मिनिमम सो वे शोल्ड ट्राय एएस हार्ड एएस पॉसिबल टो गेट गुड नाइट स्लीप बेकाउस थाट इस व्हेन थे नेक्स्ट डे यू एआरई एबल टो गेट थ्राउघ थे डे इन काल्म फैशन
यू donट मेक इम्पल्सिव decisions यू एआरई इन कंट्रोल ओएफ यूर इमोशंस
फोर मे स्लीप इस थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिटनेस टिप
आइए अब अक्षय कुमार जी को सुनते हैं
नमस्कार मैं हूं अक्षय कुमार सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला
आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नैचुरल तरीके से फिट रहने के लिए
मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना बैडमिंटन खेलना सीढ़ियाँ चढ़ना मुद्गर से कसरत करना अच्छा हेल्दी खाना जैसे मेरा यह मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है
लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कही वो मोटे ना हो जाए
बहुत जरूरी है कि हम यह समझे कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है
डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर
एक्टर स्क्रीन पर जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं हैं
कई तरह के फिल्टर और स्पेशियल इफेक्ट्स उसे होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं
आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर यह सिक्स पैक आइट पैक इसके लिए चल पड़ते हैं
यार ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है
आप लोग याद रखिएगा की शॉर्टकट कैन कट यूर लाइफ short
आपको शॉर्टकट नहीं लोंग लास्टिंग फिटनेस चाहिए
दोस्तों फिटनेस एक तरह की तपस्या हैं
इंस्टेंट कॉफी या दो मिनट का नूडल्स नहीं हैं
इस नए साल में अपने आप से वादा करो नो केमिकल्स नो शॉर्टकट कसरत योग अच्छा खाना वक्त पर सोना थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी जैसे आप दिखते हो ना उसे खुशी से एक्सेप्ट करो
आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं फिटर वाली लाइफ जियो
टेक केयर जय महाकाल
इस सेक्टर में कई और स्टार्टअप्स हैं इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं
ऑडियो
नमस्कार मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूं
मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है
मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बेलोंग करता हूं और बेंगलुरु में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो
हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है
भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है
लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं
मैं यह बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है
आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेकर आए हैं
हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है
मन की बात के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम है हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए
मैं फिटनेस की दुनिया से हूँ तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा
गदा व्यायाम से आप अपना बल अपनी ताकत अपना पोश्चर और अपनी ब्रीथिंग को भी ठीक कर सकते हैं तो गदा व्यायाम को अपनाए और इसे आगे बढ़ाएं
साथियो हर किसी ने अपने विचार रखे हैं लेकिन सबका एक ही मंत्र है हेल्थी रहें फिट रहें
2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा
मेरे परिवारजनों कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरुर बताना चाहता हूँ
आप जानते हैं कि काशीतमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे
वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया
मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था लेकिन एआई टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था
काशीतमिल संगमम में आए लोग इस प्रयोग से बहुत उत्साहित दिखे
वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी
ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा जब जनता सिनेमा हॉल में एआई की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों हमारे अस्पतालों हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा
मैं आज की युवापीढ़ी से आग्रह करूँगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े एआई टूल्स को और एक्सप्लोर करें उन्हें 100 फुल प्रूफ बनाएं
साथियो बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएँ बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है
अब मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूँ
इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है
गढ़वा जिले के मंगलो गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है
इस स्कूल का नाम है कार्तिक उराँव आदिवासी कुडुख स्कूल
इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं
कुडुख भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है
कुडुख भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे तोलंग सिकी नाम से जाना जाता है
ये भाषा धीरेधीरे विलुप्त होती जा रही थी जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है
इस स्कूल को शुरु करने वाले अरविन्द उरांव कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया
उनके इस प्रयास से बेहतर परिणाम मिलने लगे तो गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए
अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से बच्चों के सीखने की गति भी तेज हो गई
हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे
ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है
हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए
साथियो हमारी भारतभूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है
सावित्रीबाई फुले जी और रानी वेलु नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतियाँ हैं
उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तम्भ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा
आज से कुछ ही दिनों बाद 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्मजयंती मनाएंगे
सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है
वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रहीं
वे अपने समय से बहुत आगे थीं और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रहीं
शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था
महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए
उनकी कवितायें लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थीं
लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरुरत में एकदूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें
वे कितनी दयालु थीं इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता
जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरुरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए
सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है
जब वहां प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया
इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं
मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है
साथियो विदेशी शासन के खिलाफ़ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है
तमिलनाडु के मेरे भाईबहन आज भी उन्हें वीरा मंगई यानि वीर नारी के नाम से याद करते हैं
अंग्रेजों के खिलाफ़ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ीं और जो पराक्रम दिखाया वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है
अंग्रेजों ने शिवगंगा साम्राज्य पर हमले के दौरान उनके पति की हत्या कर दी थी जो वहां के राजा थे
रानी वेलु नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुश्मनों से बच निकली थीं
वे संगठन बनाने और मरुदु ब्रदर्स यानि अपने कमांडरों के साथ सेना तैयार करने में कई सालों तक जुटी रहीं
उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ़ युद्ध शुरू किया और बहुत ही हिम्मत और संकल्पशक्ति के साथ लड़ाई लड़ी
रानी वेलु नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी सेना में पहली बार अल्वूमेन ग्रुप बनाया था
मैं इन दोनों वीरांगनाओं को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ
मेरे परिवारजनों गुजरात में डायरा की परंपरा है
रात भर हजारों लोग डायरा में शामिल हो करके मनोरंजन के साथ ज्ञान को अर्जित करते हैं
इस डायरा में लोक संगीत लोक साहित्य और हास्य की त्रिवेणी हर किसी के मन को आनंद से भर देती है
इस डायरा के एक प्रसिद्द कलाकार हैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी
हास्य कलाकार के रूप में भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने 30 साल से भी ज्यादा समय से अपना प्रभाव जमा रखा है
हाल ही में भाई जगदीश त्रिवेदी जी का मुझे एक पत्र मिला और साथ में उन्होंने अपनी एक किताब भी भेजी है
किताब का नाम है सोशल ऑडिट ओएफ सोशल सर्वाइस सोशल ऑडिट ऑफ़ सोशल सर्विस
ये किताब बड़ी अनूठी है
इसमें हिसाब किताब है ये किताब एक तरह की बैलेंस शीट है
पिछले 6 सालों में भाई जगदीश त्रिवेदी जी को किसकिस कार्यक्रम से कितनी आय हुई और वो कहाँकहाँ खर्च हुआ इसका पूरा लेखाजोखा किताब में है
ये बैलेंस शीट इसलिए अनोखी है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आय एकएक रुपया समाज के लिए स्कूल हॉस्पिटल लाइब्रेरी दिव्यांग जनों से जुड़ी संस्थाओं समाज सेवा में खर्च कर दिया पूरे 6 साल का हिसाब है
जैसे किताब में एक स्थान पर लिखा है 2022 में उनको अपने कार्यक्रमों से आय हुई दो करोड़ पैंतीस लाख उन्यासी हजार छः सौ चौहत्तर रूपए
और उन्होंने स्कूल हॉस्पिटल लाइब्रेरी पर खर्च किये दो करोड़ पैंतीस लाख उन्यासी हजार छः सौ चौहत्तर रूपए
उन्होंने एक रुपया भी अपने पास नहीं रखा
दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है
हुआ यूं कि एक बार भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने कहा कि जब 2017 में वो 50 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनके कार्यक्रमों से होने वाली आय को वो घर नहीं ले जाएंगे बल्कि समाज पर खर्च करेंगे
2017 के बाद से अब तक वो लगभग पौने नौ करोड़ रूपए अलगअलग सामाजिक कार्यों पर खर्च कर चुके हैं
एक हास्य कलाकार अपनी बातों से हर किसी को हंसने के लिए मजबूर कर देता है
लेकिन वो भीतर कितनी संवेदनाओं को जीता है ये भाई जगदीश त्रिवेदी जी के जीवन से पता चलता है
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पास पहड़ की तीन डिग्रियां भी हैं
वो 75 किताबें लिख चुके हैं जिनमें से कई पुस्तकों को सम्मान भी मिला है
उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है
मैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ
मेरे परिवारजनों अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है उमंग है
लोग अपनी भावनओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं
आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत नए भजन बनाये गए हैं
बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं
इसमें बड़ेबड़े अनुभवी कलाकार भी हैं तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है
कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है
ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है
मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हाश टैग के साथ शेयर करें
मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन श्रीरामभजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें
ये संकलन भावों का भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा
मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात में मेरे साथ बस इतना ही
2024 अब कुछ ही घंटे दूर है
भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है
हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है
हम कोई भी काम करें कोई भी फैसला लें हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा इससे देश का क्या लाभ होगा
राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं
इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे आत्मनिर्भर बनाएंगे
आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे आप सभी स्वस्थ रहें फिट रहें खूब आनंद से रहें मेरी यही प्रार्थना है
2024 में हम फिर एक बार देश के लोगों की नई उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद